यहां पर जिम के स्टैंड दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पत्थरो की चटाने दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे पांच महिलाएं दिखाई दे रही हैं जिन्होंने अलग-अलग रस्म के --

कपडे पहने हुए है एक ने रेड कलर की साड़ी पहनी है एक ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है एक ब्लू और एक रेड का कॉन्बिनेशन देखने को मिल रहा है।